इस फोटो मे हम यह देख पा रहे है कि यह एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री दिखाई दे रहे है जिसके पीछे कुछ बहुत सारे जंगल देखने को मिल रहे है।

एक खेल चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हम यह देख पा रहे है की ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइड है जिसमें बहुत सारे बिल्डिंग बनती नजर आ रही है।

और नीचे इसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे मॉल दिख रहे जैसे गोदरेज सेंचुरी प्लाई का मॉल दिख रहा है।